यह एक हेयर सैलून है इस सैलून का नाम न्यू तेज ताज है और यहाँ बहुत सारे लोग दाढ़ी सेव और बाल कटाने के लिए आते हैं।

एक बहुत बड़ा मैदान है इस मैदान में बहुत ही भीड़ हैं यह मैदान चारों ओर से घिरा हुआ है।

यह एक दुकान है इस दुकान में बच्चों के सभी प्रकार के कपड़े रखे हुए हैं।

और इस नगर निगम में बहुत ही भीड़ रहती है इसके बहार में बहुत सारे लोग भी खड़े हैं ।